आदमी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें मुँह पर मास्क लगा दिखा सड़क दिखाई दे रही है। बिजली का खंब --

यहाँ पे हमे बैठ कर डांस दिखाई दे रहे है दोनों तरफ हाथ बाहें फेलाई हुई है।

आप देख सकते है यहा पे हमें पुराना बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे लिखा है राजन मिश्रा मर्चेंट लिखा हैयहा पर हमें एक दरवाजा दिखाई दे रहा है शटर दिखाई दे रहा है और शटर मै पुराने फूल और ताले दिखाई दे रहे है।

हम देख सकते है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का ए.टी.म दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर बैनर दिखाई दे रहा है यहाँ हमें यहाँ पे काली दिवार दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की दिवार देखे हमें बहार कुछ प्रचा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें --